और एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसके पीछे दो औरतें बैठी हैं बाल्टी रखी है और ये सारे आदमी--

इनसे खरीदने आ रखे हैं मच्छी और मछली--

अंदर एक औरत बाहर आ रही है उसके हाथ में कुछ है और दो आद लड़के वो भी अंदर जा रहे हैं।

ये सामने घर सा बना रखा इन्होंने अंदर भी लोग बहुत सारे और--

ये स मंडी है सब्जी की जहां सब्जियां मिली जाती हैं और ये आदमी बैठा है।

एक आदमी बैठा है और वो दूध निकाल रहा है इसके साथ में दूध की डेचकी भी रखी हुई है।

चेयर रखी है और सामने एक वो रखा है वो लगा रखा है इन्होंने शीशा--

ये एक दुकान है इसमें नीचे तकिया रखे हैं कुशन कवर होते है जो छोटे छोटे होते है।

और नीचे तीन टेबल है उसपे भी इन्होंने पन्नियां रख रखी है कपड़ोंकी वही सारे कपड़े रख रखे हैं।

जिम है ये पीछे एक आदमी जिम कर रहा है नशे में ये मशीन होती है जिससे वेट लॉस होता है ये दौड़ होती है जैसे हम सुबह वार मॉर्निंग में करते हैं।

एक आदमी बाइक पे उसके पीछे एक ग्रल बैठी है जिसने दुपट्टा बांध रखा है उसके साथ में भी एक लड़का है जो बाइक पर उसने रेड कलर का --

और डस्टबिन है और क्या कहते हैं चेयर्स हैं।

टेबल भी हैं वहां और कुर्सी रखी हुई है।

उसमें एक आदमी बैठा है टेबल पे और उन्होंने ने सिर पे पर्दा बांध रखा है व्हाईट कलर का।

पीछे एक ऑटो सी खड़ी हुई है और उस साइड भी छतरी है जहां पे बाइक है।

एक लुगाई बैठी आगे एक आदमी गया हुआ है अपना चेकअप के लिए उसके साथ में व्हीलचेयर है।

और पीछे बाइक खड़ी है साइकिल खड़ी है और एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है।